इसमें एक सोफा है उसके बाजू में दो कुर्सी है सोफा के ऊपर और कुर्सी के ऊपर गिफ्ट रखा है।

और बहोत सारा पेड़ है गार्डन है इधर घास वास उगी है।

जो की इसके गेट के ऊपर स्वस्तिक बना हुआ है गेट के बाहर एक रिक्शा है।

इस पिक्चर में मेरेको दुकान दिख रही है दो।

ये एक क्लॉथिंग शॉप है जो लड़कियों का है जैसे इसमें नाइटी है।

और सामने से एंट्रेंस दिख रही है और एक चेयर है सामने टेबल है।

इस पिक्चर के अंदर बहोत सारे बेकरी के समान है।

और एक आदमी खड़ा है शर्ट और पैंट पहन के।

जिसके बाहर चार कुर्सियां है स्कुटी है बहोत सारी --

और रेड और वाइट कलर का उसका है शर्ट का कलर ।

इस पिक्चर में मेरे को बहोत सारी बिल्डिंगे दिख रही है।

और एक स्कूटी खड़ी है उसके सामने ग्राउंड जैसा पूरा खाली है।

और बाकी लाल और येलो टाइप कलर में है।

और एक झंडा है और घर के पीछे पेड़ पौधे हैं कुछ बड़े बड़े बाजू में भी एक पेड़ है।

एक पंखा है। एक खाली कुर्सी है और अंदर रूम के कोई एक आदमी बैठा है।

इस पिक्चर में मेरे को ये किसी की एंट्रेंस दिख रही है।

जिसमें छे लाइट है और एक सामने से मेन लाइट आ रही है।

एक पे लिखा है साईं हेयर आर्ट का लिखा है और एक में शोरूम है स्कूटी का जिसमें आर_डी_ए लिखा है।

जैसे बोर्ड पे लिखा है के_के बिस्किट्स ।

और उसके ऊपर जो है वो ढाई सौ ढाई सौ का केक है और एक कांच के अंदर रखा गया है।

इसमें जो पिक्चर है इसमें किसी का बिल्डिंग बंगलो टाइप है।

जिसमें एक खिड़की दिख रही है अ एक एंट्रेंस --

और दो तीन लड़के हैं जो एक अपने डॉगी को खिला रहा है एक साइकिल चला रहा--

और इसमें बहोत सारे अलग अलग कलर के टी शर्ट रखे है।

और टी शर्ट एक रेड कलर का है जिसपे फ्लावर का डिजाइन ।

मेरे को इस रूम के अंदर जो पिक्चर है इस रूम के अंदर मेरे को कुछ बाईक्स और स्कूटी दिख रही हैं।

और बाइक और स्कूटी बहोत अलग अलग ब्रांड की है जैसे एक्सेस की है।

और कुछ पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं जैसे एक पेड़ हैं नारियल का वो बहुत बड़ा है और टेढ़ा है।

ये जो पिक्चर है बहोत ही ज्यादा अच्छी है।

ये मेरे को किसी का बेडरूम लग रहा है जिसमें एक बेड है।

जिसपे स्टैंडर्ड लिखा है और इसका लोगो है और उसके अंदर लिखा है एस_इ --

जिसमें बहोत सारी गाय बछड़े बछढियां हैं।

जैसे रेड ग्रीन येलो और उसके ऊपर से व्हाइट कलर का ढका हुआ है।

और खिड़की के बाहर बहोत सारी गाड़ियां खड़ी है उसमें से एक ईको है।